और बड़े बड़े डब्बे भी रखे हुए हैं।

यहां एक आदमी खड़ा है जो वाइट और ब्लू रंग का शर्ट पहना हुआ है।

एक बाइक खड़ी है जिसका रंग लाल है।

यहां लाइट लगी हुई है लाइट का रंग सफेद है।

इसका शर्ट कर रंग रेड और पेट का रंग व्हाइट है ।

और यहा बहोत सारे पानी के बोतल रखे हुए हैं।

यहां दो स्कूटी खड़ी है एक स्कूटी के ऊपर एक हेलमेट रखा हुआ है।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

यहां एक आदमी पीला शर्ट और ब्लू कलर की लुंगी पहन के खड़ा है।

यहाँ बहुत सारे गाड़ी खड़े हैं।

यहां सामने एक आदमी सब्जी ले रहा है।

और यहां पीले रंग की प्लास्टिक से छावनी बनाई गई है।

एक बड़ा सा पेड़ है जिसका रंग हरा है।

और यहां कुछ लोग बैठे हैं और एक आदमी खड़ा है।

यहां एक पोल लगा हुआ है जिसमें बिजली की तार टंगी हुई है।

यह एक बिल्डिंग का दृश्य है जिसका रंग लाल और सफेद में है।

नीचे एक ब्लू रंग का जार रखा हुआ हैं।

यह एक तालाब का दृश्य है।

हरे गुलाबी रंग के कुछ बोरे रखे हुए हैं।

एक टेबल और कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं।